इसमें कुछ लोग-लोग है पेड़-पौधे हैं जो इधर-उधर मतलब लोग है जो घूमते हुए दिखाई दे रे हैं बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे --

हमें यहां पे एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सुंदर लाइटों का झूमर लगा हुआ है।

और इसमें कुछ मूर्तियां लगी हुई है जी जिनको न्यू न्यू ड्रेस पहना रखी है और सामने कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक लंबी सीधी जाती हुई सड़क दिखाई दे रही है।

एक मेन गेट लगा हुआ है ब्राउन कलर का लोहे का वो दिखाई दे रहा है।